इस तस्वीर में मुझे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही--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

इस तस्वीर मे मुझे कुछ टेबल दिखा--

इस तस्वीर में मुझे कुछ दुकान दिख--

मुझे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे कुछ दुकान दिखा--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

इस तस्वीर में मुझे कुछ बाइक दिख--

इस तस्वीर में मुझे कुछ टेबल दि --

इस तस्वीर में मुझे एक पेट्रोल पंप --

यहाँ मुझे कुछ पुरुष दिखाई दे--

इस तस्वीर मे मुझे कुछ बर्तन दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे एक बाइक दि--

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान दिखा--

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान दि--